जिसमें आजू-बाजू हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं।

ऑफिस नीले और पीले गुब्बारों से सजा हुआ है।

यहाँ पर साइड में एक नीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहाँ पर हमें कुछ लाइटें भी नजर आ रही हैं।

कान काल दुकान के पास काले और पीले रंग से--

इसमें एक काले रंग की गाड़ी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं।

दुकान नजर आ रही है जहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जहाँ पर दो व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

जो काले रंग के और पीले रंग के कपड़े पहना हुआ है मकान के बाहर कलर कलर के गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक मस्जिद नजर आ रही है।

और काले रंग के पंखे लगे हुए हैं।

जो हरे और कथई कलर की है।

अंग्रेजी में जोहल लिखा हुआ है। इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है।

यहाँ पर साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है यहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

इसके बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

इस चित्र में हमें एक पीले रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके बाहर एक पेड़ लगा हुआ है और रंग बिरंगी दीवारें भी सजी हुई है।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा बाग नजर आ रहा है जिसके आसपास बहुत सारी हरियाली है और गुलाबी रंग के फूल लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक सड़क नजर आ रही है सड़क पर एक घर है घर सफेद रंग का है।